चला सकते हैं और ऊपर छोटे छोटे बच्चों के स्कूटर भी दिख रहे हैं हमें।

ये वो दिख रहा है मुझे दो जगह एक जगह से आने वाले एक जगह से जाने वाले जो यू टर्न करते हैं लोग ये उनके लिए अंडर पास है।

ग्राउंड यहां पे घास नहीं हैं यहां पर मट्टी वट्टी हैं जैसे अखाड़े वगैरा की होती हैं।

किसी चीज का वो मैं ढंग से देख नहीं पा रही हूं बाल वगैरा का है।

औ भगवान जी की कई तरीके की फोटो भी दिख रही हैं।

मुझे लिम्का जूस बिकते हुए केक वेक रखे हुए है तीन चार अच्छे अच्छे--

काउंटर पे एक नंबर दो नंबर चेयर पड़ी है।

छोटा मोटा--